एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की शॉप है यहाँ पर जो है ऑटो है इलेक्ट्रिक ऑटो खड़े हुए है।

अच्छी डेकोरेशन है एंड ऊपर शॉप के ऊपर बोर्ड लगा हुआ जहां पर एयरटेल प्रोस इंटरनेट ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है नीचे सर्कुलर रोड अ जड़ोही मोड़ अ है लिखा हुआ है।

ये एक शादी गार्डन है शादी गार्डन में फाउंटेन है फाउन एंड रेड कलर का रेड कलर के ब्लॉ अ टाइल्स हैं।